ये एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है ये बहुत सुंदर हेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो आदमी जा रहे हैं।

यहां एक मेरे को किराने की मतलब मतलब बाथरूम की रूम नजर आ रहा है ना सामान की दुकान है यहां पर झाड़ू--

बाथरूम वाली घरवाली टोल्स वाली और नीचे यहां पर्दा भी बिछा हुआ है।

यह जैसे कि यही कई सारे कपड़े साड़ी कुर्ती--

अंदर चेयर टेबल भी रखी हुई है। खिड़की भी यहां की बहोत ही सुंदर है।

बकेट और बहोत ही सारा समान है यहां एक लेडी भी है जो सामान खरीद रही है और दो स्टाफ के लोग भी हैं जो यहां सामान बेच रहे हैं।

नीचे दरी भी बिछी हुई है एक आदमी यहां--

कुछ माइक्रो से देख रहे है और इनकी कुर्सी भी बहोत सुन्दर है यहां टायल्स भी लगी हुई है यहां लाइट्स भी बहोत सुन्दर है पंखे भी चल रहे हैं।

यहां मेरे को दो दुकान नजर आ रही है एक--

यहां पर मेरे को एक किराना की दुकान नजर आ रही है यहां पर--

पहाड़ बहोत बड़ा है। यहां पर सूरज डूबता हुआ भी बहोत सुंदर दिखाई--

नीला और करिया है ये बहोत ही सुंदर मेरे को नज़र आ रहा है और ये बहोत ही सुन्दर लाइट से नीचे चेयर्स भी रखी हुई हैं।

ये एक मेरे को यहां दुकान नजर आ रही है शायद--